यह एक रुई बनाने वाला मशीन है।

यह चोटिया थाना का दृश्य है जहां पर अंदर में जीप लगी हुई है।

एक छोटा फैन भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे चॉकलेट भी रखे हुए हैं कुछ स्नैक्स भी रखे हुए हैं रोल भी रखे हुए हैं और बर्गर भी रखे हुए हैं।

बिल्डिंगे बनी हुई है जो की गाजरी कलर की है।

यह एक साइकिल का दुकान है यहां पर बहुत सारे बड़ा साइकिल है।

जोकी क्रीम कलर की है।

यहां पर बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं जो की ब्लैक प्लास्टिक और येलो प्लास्टिक से है।

यह मार्केट का दृश्य है जहां पर बहोत तरह की मछली है और एक लेडिस है जिसे काट रही है।

एक औरत है जिसका हाथ दिखाई दे रहा है फिर--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

यह एक रोड का दृश्य है जहां पर सामने से पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

जो कि एच_पी का है यहां बहुत सारे ट्रक भी रखे हुए हैं।

बिल्डिंग में के अंदर जाते हुए एक आदमी दिख रहा है।

मल्टी भी बना हुआ है।

यहां पे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो की व्हाइट कलर की है।

सभी लोग बेंच के ऊपर कॉपी रख के लिख रहे हैं।

यह एक नदी के पास का दृश्य है जहां पर एक आदमी खड़ा है जो की पिंक कलर का शर्ट पहना है घड़ी भी पहना है।

यहां पर सभी लोग अपने अपने टेबल पर बैठे हुए हैं और ब्लू कलर की चेयर है।

सूरज दिखाई दे रहा है जो कि पूरा येलो कलर का है।

यहां एंट्री गेट के पास एक मैट बिछाया हुआ है जो कि ब्ल्यू कलर है और दो आदमी है अंदर की ओर--

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं चेयर पर ।